यह एक जगह दिख रही है जहाँ पर तीन चार बसे खड़ी हुई है नीचे जमीन था अ बंजर पड़ी हुई है पीछे की तरफ पेड़ लगे हुए है ऊपर आसमान में साइड में--